इस चित्र में एक सफेद रंग की कार खड़ी है।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

दीवार पर भी कुछ लिख हुआ है।

कुछ लोग सैर कर रहे हैं कुछ खेल रहे हैं।

चित्र में एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर रंग बिरंगे फूल है।